ये एक भूत का मंदिर है और यहां पे--

दूर दूर तक खेत ही खेत हैं और आजू बाजू बहोत बड़े बड़े पेड़ भी यहां पे--

यहाँ पे दो बड़े क्रेनाँ हैं और यहाँ पे वाइरान भी दिख रहे ए और निच्चे से फरशाँ उपर उठा के लिए जा रहे--

सारे यहां पर राइट साइड में बड़े-बड़े बिल्डिंग है। बड़े-बड़े झाड़ है। हरी-हरी घास होती है यहां पे भी --

ये एक कॉटिंग की दूकान है और यहाँ पे स्क्रीन पे कटिंग करे हुए चेहरों को दिखाया जा रहा है और रोनॉल्डो की फोटो भी यहाँ पे है।

ये एक बड़ा सा ग्राउंड है पार्क है यहां पे बहोत सारे--

ये एक गोशाला है यहां पे बहुत सारे जर्सी गईयों को बांधा गया है सबको अलग अलग जगह बांधा गया है।

यहां पे म्म्म्म पी_एम मोदी की भी तस्वीर लगाई गई है यहां पे आदमी खड़ा हुआ यहां पे--

पर्दा मारा गया है यहां पे बैडमिंटन शटल कॉक खेल खेल सकते हैं।

ये एक फ्रूट की शॉप है और यहां हरे काले अंगूर को--

बैंक के ऊपर आसमान दिख रहा है बजरा है खंभे हैं बड़े बड़े झाड़ा हैं।

ये एक गैस एजेंसी है और यहां पर छोटे छोटे गैस रखे हुए हैं यहां पे बड़े बड़े छोटे छोटे स्पीकर्स भी रखे हुए।

चीजें पाइपलाइन है छोटे-छोटे नट बोल्ट हैं और उसके पाने भी रखे हुए हैं और यहां पे काला स्क्रू भी रखा हुआ है राइट साइड में स्क्रीन के ऊपर --

कांच ग्लास से बनाया गया और राइट साइड लेफ्ट में बहोत अच्छी तरीके के टायल्स युज कि गई और नीचे भी बड़े बड़े चौड़े टाइल्स बिछाए गए हैं नीचे--

वहां पे और राइट साइड में हरी हरी घांस भी उठी हुई है और यहां पे एक अदमी कपड़े से पोंछ रहा है और यहां पे--

खम्बे भी है और यहाँ पे बहोत सारे वायरिंग भी गई हुई है और बहोत सारे गैड़ांग गाड़म भी आ रहे हैं जा रहे हैं लाइटे भी चालू है उनकी गाड़िया --

यहां पे मशीना भी बहोत सारे तख्ते मारे गए ऊपर जाली भी खींची गई है और यहां पे ब्लू कलर के पाइपा भी बहुत सारी ग्रीन कलर --

खुशियों का भी इंतजाम किया गया और ये आदमी एक फोटो खींच रहा है जैकेट पहने हुए इस आदमी की।

ये एक बड़ा सा घड़ी दिख रही है ये चश्मे की दुकान है यहां पे अलग-अलग शेल्फ में --